और इस शहर का पीछे में आप देखेंगे एक बड़ा सा बिल्डिंग है दो बिल्डिंग जिस एक वाइट है और एक बन रहा है सिल्वर कलर का --

कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने इंतजार कर रहे हैं और यहां घड़ी है जिसका समय हो चुका है।

यहां तीन घर बनाए हुए हैं ब्लू कलर के और यह--

जिसमें ग्लासेस के डोर बनाए हुए हैं और अगर आप साइड में देखेंगे तो वह टीने की वॉल बनाया है।

मौसम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दिन का मौसम है।

और लगता है अंदर में--

इसके आसपास में पूरे माउंटेन और हिल्स बने हुए हैं जिसके पत्थर--

रेड कलर के छत है।

और यहाँ आप देखेंगे एक स्विमिंग पूल है और यहां नेवी ब्लू से--

और दोनों साइड पर गच्छिया है।

और यहा के मौसम भी बहोत क्लियर है।

और दो बच्चे की जर्सी से हमें लगता है वो लोग सेम टीम में है और यह फील्ड ट्रैक रेड कलर का है और--

यह रात का समय हो चुका है और यह बहुत बड़ा और सुंदर सा एक रिसॉर्ट है। जिसमें बंबू से घर बनाए हुए हैं।

और ये गाड़ी का फ्यूल कैप जो ओपेन है।

इसमें आप देख सकते हैं एक न्यू बोर्न बकरी जो बैठा हुआ है छाय पर घास के ऊपर पर।

यहां साइड पर आपको बहुत ज्यादे गोदरेज दिखाई देंगे और कबर्ड भी।

यह बहोत बड़ा एक दुकान है फर्नीचर दुकान--

और आप देखेंगे साइड में यहां कुछ घर बनाए हैं।

यहां आपको तीन मैट्ट्रेस दिखाई देंगे --

इस पिक्चर को देखकर लगता है ये एक एग्जाम हाल है और या टीचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें एक इंसान सबको पढ़ा रहा है।

यहां ऐ_सी है लाइट है पंखे हैं।